इस फोटो में मुझे बहोत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पोस्टर दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पेल्डिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

ये फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये फोटो में मुझे छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पराठे दिखाई दे रहे हैं।

हॉल दिखाई दे रहा है।